typing text and basic formatting पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे:
text align करना
bullets और numbering का उपयोग करना
cut copy और paste विकल्प का उपयोग करना
bold underline और italic विकल्प का उपयोग करना
writer में font name font size font color विकल्पों का उपयोग करना
formatting विशेषताएं: इन सुविधाओं को लागू करने से हमारे documents अधिक आकर्षक बनते हैं
plain text के documents की तुलना में उन्हें पढ़ना बहुत आसान होगा
यह tutorial
ubuntu linux os version 1804 और libreoffice suite version 635 का उपयोग करके रिकॉर्ड किया गया है
हमारे द्वारा पहले बनाई गई resume odt file खोलें
यह file आपको इस tutorial पेज पर code files link में प्रदान की गई है
कृपया download करें और file extract करें
एक copy बनाएं और फिर उसका अभ्यास करने के लिए उपयोग करें
हम पहले writer में text को अलाइन करने के बारे में सीखेंगे
हमने पहले resume शब्द टाइप किया था और इसे पेज के केंद्र में अलाइन किया था
अतः फिर से शब्द resume चुनें
यदि आपने अपनी libreoffice window का आकार बदला है तो कुछ icon दिखाई नहीं दे सकते हैं
उस स्थिति में छिपे हुए icon को देखने के लिए toolbars के अंत में double arrow icon पर click करें
अब formatting toolbar पर align left icon पर click करें
शब्द resume अब पेज के बाईं ओर अलाइन हो गया है
align right icon पर click करें शब्द resume पेज के दाईं ओर अलाइन हो गया है
अब justify icon पर click करें
resume शब्द को पेज के दाएं और बाएं margin के बीच समान रूप से रखा गया है
यह सुविधा तब अधिक स्पष्ट होगी जब हमारे पास text की एक पंक्ति या अनुच्छेद होगा
जब तक हमारा text फिर से centre में अलाइन न हो जाए तब तक अन्डू करें
writer में हम ctrl को अन्डू करने के लिए keyboard पर ctrl + z कीज़ दबाते हैं resume शब्द का चयन रद्द करें
अगली पंक्ति पर जाने के लिए keyboard पर enter की दबाएं
एक ओर पंक्ति बनाने के लिए फिर से एक बार enter की दबाएं
toolbar में align left icon पर click करें
फिर bold विकल्प को अक्षम करने के लिए toolbar में bold icon पर click करें
अब bullets और numbering के बारे में सीखते हैं
bullets और numbering का उपयोग तब किया जाता है जब किसी document में स्वतंत्र बिंदु लिखने होते हैं
प्रत्येक बिंदु या तो bullet या number से शुरू होता है
bullets का उपयोग अक्रमित सूचियों के लिए किया जाता है
numbering का उपयोग क्रमित सूची के लिए किया जाता है
formatting toolbar में हम bullets और numbering के लिए पृथक icons देख सकते हैं
bullets icon पर click करें
तुरंत dot या bullet symbol document पर प्रदर्शित होता है
अक्षर a type करें और enter दबाएं
b type करें और enter दबाएं
अब numbering icon दबाएं
तुरंत bullet symbol number 1 में बदल जाता है
c type करें और enter दबाएं
d type करें और enter दबाएं
आशा है कि यह आपको bullets और numbering के बीच के अंतर को स्पष्टतः समझाएगा
यह सभी text चुनने के लिए बाएं mouse button पर click करें और खींचें
अब हम bullets और numbering ऐक्सेस करने का अन्य तरीका सीखेंगे
पहले menu bar में format menu और फिर bullets and numbering विकल्प पर click करें
bullets and numbering dialog box खुलता है
यह विभिन्न टैब के तहत विभिन्न styles प्रदान करता है जिन्हें हमारे document पर लागू किया जा सकता है
bullets टैब चुनें यदि पहले से चयनित नहीं है
कई bullets styles यहां दिखती हैं
बड़ा square bullets चुनें
और dialog box के निचले दाएं कोने पर ok button पर click करें
bullet symbols में बदलाव देखें
tab bullets and numbering dialog box फिर से खोलें और numbering टैब पर click करें
कई numbering styles यहां दिखती हैं
roman numerals स्टाइल चुनें
और dialog box के निचले दाएं कोने पर ok button पर click करें
numbering में बदलाव पर ध्यान दें वे अब roman numerals के रूप में प्रदर्शित हो रहे हैं
इसीतरह हम अपनी पसंदानुसार किसी भी bullets या numbering style का उपयोग कर सकते हैं
अब keyboard पर delete की दबाएं
फिर बाकी numbering को हटाने के लिए keyboard पर backspace की दबाएं
bullets and numbering dialog box को फिर से खोलें और numbering टैब पर click करें
अब दूसरी style पर click करें और ok बटन पर click करें
अब हम अपना पहला बिंदु type करने के लिए तैयार हैं
name type करेंगे name colon space ramesh और enter दबाएं
यहां से प्रत्येक बिंदु के बाद enter की दबाएं
अगला bullet point नई वृद्धिशील संख्या दर्शाता है
resume में दूसरा बिंदु fathers name colon mahesh type करें
फिर तीसरा बिंदु mothers name colon shweta type करें
यहां दिखाई गए अनुसार अगले दो बिंदु type करें
ctrl + s कीज़ दबाकर अपनी file सेव करें
कार्य करते समय अपनी फ़ाइल को अक्सर सेव करना एक अच्छी आदत है
यहां सूची में bullets या numbers के कई स्तर हो सकते हैं
यह हमारे द्वारा चुने गए format पर निर्भर करता है
मैं आपके लिए प्रदर्शित करती हूं
बिंदु क्रमांक 4 fathers occupation पर जाएं
colon के आगे cursor रखें और enter दबाएं
फिर एक बार टैब की दबाएं
तुरंत नंबर 5 एक नई bullet list में बदल जाता है और नंबर 4 से नीचे हो जाता है
bullet बिंदु के अंत में cursor ले जाएं और enter दबाएं
self employed type करें और enter दबाएं
indentation को कम करने के लिए हम shift + tab कीज़ दबा सकते हैं
अब अगला बिंदु एक line में आने तक delete की दबाएं
cursor को क्रमांकित बिंदु 5 के अंत में ले जाएं और enter दबाएं numbered 6 सूची पर प्रदर्शित होता है
bullets and numbering को बंद करने के लिए bullets and numbering dialog box फिर से खोलें
तल में remove button पर click करें
हम देखते हैं कि bullet and numbering style अब text की नई line के लिए नहीं दिख रही है
formatting toolbar में bullets and numbering quick access को स्वयं explore करें
ध्यान दें कि हमने name शब्द अपने document में तीन बार टाइप किया है
एक ही text को फिर से टाइप करने के बजाय हम writer में copy और paste विकल्प का उपयोग कर सकते हैं
अतः सीखते हैं कि यह कैसे करें
पहले text mothers name से name शब्द डिलीट करें
fathers name में name शब्द चुनें
mouse पर rightclick करें और copy चुनें
mothers और colon symbol text के मध्य cursor रखें
mouse पर rightclick करें और paste चुनें
name देखते हैं कि name शब्द स्वतः ही pasted हो गया है
इन विकल्पों के लिए shortcut कीज हैं copy के लिए ctrl + c और paste के लिए ctrl + v
बड़े documents में दोहराए जाने वाले text को लिखते समय यह सुविधा बहुत उपयोगी है
इसलिए हमें पूरे text को बारबार लिखने की आवश्यकता नहीं है हम बस copy और paste कर सकते हैं
writer में copy के समान विशेषता है वह है cut
मैं समझाती हूं
पहले mothers name text से name शब्द डिलीट करें
अब father s name में name शब्द चुनें
rightclick करें और cut चुनें
ध्यान दें कि यहां fathers शब्द के आगे name शब्द अब नहीं है
जिसका अर्थ है कि यह cut या डिलीट हो गया है
mothers और colon symbol text के मध्य cursor रखें
mouse पर rightclick करें और paste चुनें
name देखते हैं कि mothers शब्द के आगे name शब्द pasted हो गया है
cut के लिए shortcut की ctrl + x है
इसीतरह fathers के आगे भी शब्द paste करें
cut और paste विशेषता document में text को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उपयोगी है
text के copy और cut करने के बीच का एकमात्र अंतर है copy विकल्प मूल शब्द को उसके स्थान पर रखता है जहां से इसे copy किया गया था जबकि cut विकल्प इसे अपने मूल स्थान से हटा देता है
document के अंत में cursor ले जाएं दो बार एंटर दबाएं
अब एक now heading education details type करें
अब हम सीखेंगे कि किसी भी text के font name और font size को कैसे बदला या लागू किया जा सकता है
पहले ही हमने font name के रूप में undotum चुना है
इसलिए हम font name field में undotum देख सकते हैं
heading education details के लिए भिन्न font और size का उपयोग करें
पहले education details text चुनें फिर font name ड्रापडाउन पर क्लिक करें
liberation sans खोजें और इस पर click करें
अभी font size field 14 दर्शा रहा है
इसे 11 में बदलें
हम देखते हैं कि text का font size कम हो गया है
अब font color पर जाएं
सुनिश्चित करें कि हमारा text अभी भी चयनित है
अब font color में ड्रापडाउन पर click करें और green रंग चुनें
अतः हम देखते हैं कि डैडिंग अब हरे रंग की हो गई है
अब हम bold italic और underline icons पर click करेंगे
हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने text के लिए इन text formats के किसी भी संयोजन का उपयोग कर सकते हैं
ctrl + s कीज दबाकर अपनी file सेव करें और फिर ऊपर दाईं ओर पर x आइकन पर क्लिक करके इसे बंद करें
इसी के साथ हम इस स्पोकन tutorial के अंत में आ गए हैं संक्षेप में
इस tutorial में हमने सीखा:
text align करना
use bullets और numbering का उपयोग करना
bold underline और italic विकल्पों का उपयोग करना
writer में font name font size font color विकल्पों का उपयोग करना
नियतकार्य के रूप में:
bullets and numbering को एक्टिव करें
कोई भी style चुनें और text की कुछ lines type करें
कुछ text चुनें और इसके font name को free sans में बदलें
font size को 16 करें
text को italic करें
font color को red करें
file को सेव और बंद करें
निम्नलिखित link पर मौजूद video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें
हम spoken tutorial का उपयोग करके कार्यशालाएँ आयोजित करते हैं और प्रमाणपत्र देती है अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें
कृपया अपनी समयबद्ध queries को इस forum में post करें
spoken tutorial project mhrd भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है
इस tutorial का योगदान मूलरूप से 2011 में desicrew solutions pvt ltd द्वारा दिया गया था
यह स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है आईआईटी बॉम्बे से मैं जया अब आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद